आप देख सकते हैं सामने एक इंसान प्लेन्ट प्लांट यानि पौधा लगा रहा है।

नीले और एक नीले उम गेट दिख रहा है कपड़े टंगे हुए हैं।

वाइट कलर की और उसके पीछे भी पीली कलर की लगी हुई हैं। बहोत सारे पेड़े लगी पेड़ लगे हुए।

बलब दिख रहे हैं। एक स्टूल दिख रहा है जिसपर --

बहोत शैम्पूस टंगी हुए हैं चिप्स टंगी हुई हैं क्रीम टंगी हुई हैं और यहाँ रखा हुआ है। बहोत सारी बरनियाँ रखी --

आप देख सकते हैं सामने एक स्कूटी खड़ी हुई है। स्कूटी के पीछे दो बाइक खड़ी हुई हैं।

हमें पॉपकॉर्न मिलती है और विस्की मिलती है थम्स अप मिलती है कोल्ड्रिंक मिलती है।